एक पंखा वॉल फैन टंगा हुआ है।

आदमी सब इधर उधर देख रहा--

सामने में एक स्विफ्ट गाड़ी लगा हुआ है जो की इमरजेंसी हॉस्पिटल के सामने लगा हुआ है दो आदमी खड़े हैं और टेंपू --

हरे कलर के पत्ता की तरह दिख रहा है जोकि देखने में--

की गाड़ी बनाने वाली सामान है।

और इस सामान से स्कूटर में काम होने वाला है और यह काम--

सामने पानी की बोतल है और स्प्राइट कोका कोला फंटा --

डब्बा में कोई सामान भी है और अमूल का--

सामने में एक आदमी बैठा हुआ है।

खड़ा है और घर में व्हाईट पेंट हैं जो कि दिखने में--

और यह एक होटल है जो कि सी_सी_टी_वी कैमरा के मध्य नजर में है और--

जोकि एक किराना दोकान है ओड आदमी सब--

सामने में एक आदमी खड़ा है जोकि पानी के बीच मे --

और पानी देखने में हरा कलर का है।

और उसमें शीशे का खिड़की लगा हुआ है।

जो की देखने में बहुत ही लाजवाब लग रहा है और यह दीवाल --

सामने में भगवान की पूजा हो रही है और विंटर वाइन भी दिख रहा है।

टेबुल भी है और व्हाइट कलर का--

सामने में एक फील्ड है जहां बच्चे खेलते हैं लेकिन अभी बच्चे वहां पर नहीं दिख रहे हैं।

प्लस्तरा की हुई है फील्ड पर जोकी देखने में--

सामने में एक खाली मैदान है जिसपे हल्की हल्की घास है और यह देखने में--

सामने में एक शेर का बच्चा है जोकी झूला पर बैठा हुआ है और--

जिम कर रहा है और जिम में बहुत सारे सामान हैं।

जिससे आदमी एक्सरसाइज करते हैं और वह भी आदमी--

सामने में एक साइकिल वर्क दुकान दिख रही है जिसमें बहुत सारे--